यह देखने में बोहोत ही हरी-भरी लग रही हैं।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा पहाड़ है।

यहाँ पर उम्म टमटम को --

यहाँ पर शादी का महोत्सव है।

और यह पहाड़ पे बोहोत ही अच्छे तरीके से मेहनत से बना रहे हैं।

अपनी हाथों और में जूता लेकर बियावो --

यहाँ पर एक गेट है।

और उसमें पानी नहा रहा है।